ये एक चर्च दिखाई दे रहा है। जहां पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं खूबसूरत और लाइटिंग भी बहोत सुंदर सुंदर लगी हुई है और स्टारस भी हैं लाइट भी है और एक आदमी जा रहा है। दो --

ये बहोत खूबसूरत लग रही है और वर्कर्स काम रहे हैं । एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है । टायर भी रखे हैं यहाँ पे रंगबिरंगे ।

ये एक जिम दिखाई दे रहा है जहाॅं पे दो मिर- मिरर रखे हुए हैं। वर्कआउट मशीन भी है यहाॅं पे और ये मेट अ- बिछा हुआ है।

ये अधिकारी है पटना से और यहाँ पे बोहोत --